यहाँ पे हमे एक वाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है | जहाँ पे हमे बहुत सारी विंडोज गैलरी हमे यहाँ पे शो हो रही है | ब्लैक कलर का पथर यहाँ लगा है | जहाँ पे कुछ लिखा है वो हम यहाँ दिखाई दे रहा है |

आ यहाँ पर हमें एक मेला दिखाई दे रहा है जहाँ पे टिकेट हाउस हमें दिखाई दे रहा है एंट्री गेट एक्जिट गेट निकल दिखाई दे रहा है।

अम यहाँ पे हमें एक मार्केट शो हो रहा है वेजिटेबल मार्केट जहाँ पे बहोत सारी वेजीटेबल्स खड़ी है लोडिंग ऑटो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है।

लाइटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है पेड़-पौधे नजर आ रहे है बहुत सारे यहाँ पे।

यहाँ पर कुछ समान नज़र आ रहा है हमें पूजा का और पीछे एक पीली कलर की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है ब्लैक खंबा दिखाई दे रहा है पीली कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही--

देन पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ पे हमें विंडोज नज़र आ रही हैं|

वह मैप दिखाई दे रहे हैं | कुछ अ बॉक्सेस रखे हैं जिनमें सामान रहा हैं वो हमें दिखाई दे रहा है | कुछ चिप्स खाने की चीज़ें टंगी हुई है वो हमें दिखाई दे रहा है | बोरे दिख --